दुकान में सी.सी.टी.वी. सेटलमेंट भी लगे हुए है।

यहां पे शायद कुछ काम भी चल रहा इसलिए यहां इसलिए तस्वीर लगी हुई है।

ज्यादा पेड़ पौधे ज्यादा पेड़ तो नज़र नहीं आ रहें है।

एक अंकल थे वे मछली काट के बेच रहे है ।